यह एक मन्दिर है जिसका बहोत बड़ा गेट है व्हाइट कलर का गेट है मन्दिर का अंदर से मन्दिर भी व्हाइट है। इसके ऊपर रेड कलर के झंडे लगे हुऐ हैं।

साइड मे भी छोटा-सा कुछ बना है सीमेंट का और इसमे सीढ़ियाँ भी हैं और प्लैन वो भी है साइड में रैलिंग लगी हुई है। आस-पास पेड़ लगे हुए हैं।

पेड़ लगे हैं सामने। साइड में एक झोपड़ी बनी है छोटी सी और लाइट के तार भी लगे हुए हैं।

और फुटपाथ भी है चलने का। कुछ लोग खड़े हुए हैं। बीच में यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बना हुआ है खाने पीने का और बैठने की जगह भी है और नारियल छोटे-छोटे पेड़ भी हैं और बड़े-बड़े पेड़ भी हैं।

बड़े-बड़े पेड़ है और दो गाड़ीयाँ खड़ी है यहाँ पे और यहाँ पे रेतीली जमीन है। ए --

कुछ ऊपर चड रहे है कोई कोई नीचे उतर रहा है और रैलिंग लगी हुई है। बड़े-बड़े गेट बने हुए हैं जिनके ऊपर गुंबद बनाए --

एक लड़का है जिसके हाथ मे जेकेट है ओ पीछे एक अंकल है जो रीसेप्शनिस्ट से कुछ बात कर रहे हैं और एक व्हाइट कलर की शर्ट रखी है टेबुल के ऊपर और उसका नाम है टर्निंग --